सीन दिखाई दे रहा था और बहोत ही प्यार।

पिछलने के देख सकते हैं बहुत ही मस्त है --

आप लोग गाइज देख सकते है बहुत ही काफी अच्छा दिखाई दे रहा है

हमलोग यहां देख सकते है ये क्रिश्चियन का मंदिर है।

बुद्ध देव खड़े है और काफी सारा आदमी आया हुआ है देख सक --

और काफी सारा आदमी आया हुआ है चाचा-चाची लेते हुए देख सकते हो भाभी को।

और ये जीजा दोनों घूमने के लिए आया हुआ है जीजा जी के साथ अभी मजा हम ले रहे हैं देख सक --

बहोत ही जबरदस्त सीन देख सक --

ये बहुत ही हाई कॉलेज है देख सकते हैं और बहुत ही --

कितना मस्त बादल छाया हुआ है चारों तरफ से देख सकते हैं।

हेलो गाइस देख सकते है काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को यह बिहार बस का है और काफी मस्त --